एक बाल है। लाल कलर का बहोत बड़ा पोस्टर है लाल कलर कि पेंट हैं।

और यहां पे ग्रे कलर के पत्थर लगे हुए हैं खंभे हैं और आस पास बाउंड्री हो रखी है फुटपाथ है।

एक आदमी देख रहा है एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है दो काले कलर के पंखे लगे हुए है।

पास में खंभा है बिजली का तार है रोड बना हुआ है एक ऑटो जा रहा है।

बनाया जाता है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर एक--

और अंदर लोग खड़े हैं रेलिंग लगी हुई है छत है।

और आसपास जंगली घास है बहोत सारी मिट्टी है ऊपर तिरंगे लगे हुए बहोत सारे सामने एक नीला बोड भी लगा हुआ है।